कुछ यहाँ दिखाई दे रही है ऊपर की छत व्हाइट कलर की दिख रही है इसमे दो जलते हुए दिख रहे है एक पंखा दिखाई दे रहे है और नीचे की फर्स ब्लैक कलर की दिख रहे हैं उसके ऊपर लकड़ी का टेबल बना हुआ दिखाई--

कारपेंटर दिखाई दे रहा है कुछ मशीन दिखाई दे रही है।

ये छत का फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ पर तीन महिलाये एक्साइज़ करते हुए दिखाई दे रही है उनके नीचे कुछ कार्पेट ओर कुछ दरिया बिछी हुई दिख रही है सामने की दीवाल दिखाई दे रही है जिस पे हरे कलर के गमले दिखाई दे रहे है।

पूरी ऐसी का एक मखखा दिखाई दे रहा हैं और ऊपर के दिवार पर आसमानी कलर से कुछ कलर किया गया दिख रहा हैं उपके ऊपर सफेद अक्षरों मे लिखा हुआ दिख रहा हैं नीचे वाइरिंग लटकती दिखाई दे रही हैं पीछे काले कलर के दो पिलर दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर से उसकी छत दिखाई दे रही है जो पुराने टाइप की दिखाई दे रही है नीचे सटर दिखाई दे रहा है उसका ताला लगे दिखाई देरहा

ये एक चर्च का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके सामने कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है उनके पीछे कुछ दिख रही है उनके बच्चे कि घर दिख रहे है उसमें एक कोई व्यक्ति ने व्हाइट कलर की पोशाक पहनी जिसने गले में हरे कलर का गमछा पहना है पीछे की दीवार पर --